ये एक बोहोत बड़ी नदी का चित्र दिखाई दे रहा है और इस नदी के अगल बगल कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

ये एक ये एक गार्डन के बगल में घर बना हुआ है और उस घर के उस घर के बाहर कई सारी चार पहिया की --

करते हैं और इस लैब में कई सारे लोग हैं।

और इस बैंक के अंदर एक आफिसर बैठा हुआ है और ये दूसरे लोगों के रुपये भी निकाल कर दे रहा हैं।

शेरवानी एक काँच के अंदर रखी हुई है और ये शेरवानी देखने में बोहोत ही सुंदर लग रही हैं।

ये-ये एक घर का चित्र दिखाई दे रहा है और इस घर में- इस घर में कई सारे पर्दे और डबल बेड बिछा हुआ हैं।